और कोई ऐसे भी खड़े हैं काफी सारा ठेला है काफी बड़ा सा ये जो मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है कार वगैरा भी यहाँ पे --

दिखाई दे रही है और एक छत जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे सीढ़ी दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की मॉल जैसा दिखाई दे रहा है।

कोई-कोई सी अदर कलर में भी दिखाई दे रही है निचे काफी सारा जंगल जैसा भी दिखाई दे रहा है एक ग्राउंड यहाँ पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ उन भी जो है --

यहाँ पे जैसे लग रहा है बच्चो की प्रेयर होती होंगी क्योंकि ये लाइन से काफी सारे बच्चे जो है वो खड़े हुए है एक अंकल --

और दो-तीन लोग जो हैं ये एक खड़े हुये हैं जो कि कार को सुधार रहे हैं कार का कलर वाइट - वाइट सा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक अंकल दिखाई दे रहे है जिसको टी-शर्ट पहनी हुईं है टी-शर्ट लॉयर और ये --

जिसमे काफी सारी कुलिया वगेरा रखी हुई है एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है निचे डस्टबिन भी --

यहाँ पे एक सलून जैसा दिखाई दे रहा है काफी सारी कुर्सी चेयर वगेरा रखी हुई है जी जहां पे एक अंकल जो है खड़े हुए है।

यहाँ पे एक मौसम दिखाई दे रहा हैं नीचे रोड दिखाई दे रहा हैं काफी सारे यहाँ पे घर उन भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक घर जैसा बना हुआ हैं और नीचे मतलब काफी सारे रेड रेड कलर --